मुझे इस तस्वीर में एक झरना नजर आ रहा है।

यहाँ ग्रे कलर ब्लू कलर और व्हाइट कलर की गाड़ियाँ दिख रहीं हैं।

मुझे इस तस्वीर में एक ओवर ब्रिज नजर आ रहा है।

दुकान के ऊपर सुज़ुकी सेल्स एंड सर्विस सेंटर लिखा हुआ हैं।

मुझे इस तस्वीर में कई सारी बकरियां नजर आ रही हैं।

मुझे इस तस्वीर में एक पक्षी चलते हुए--

इस तस्वीर मे एक मछली की दुकान दिखाई दे रही है।

कई प्रकार की छोटी बड़ी मछलियां दिखाई दे रही है।

कैफे के ऊपर टाउन कैफे लिखा हुआ दिख रहा है।

मुझे इस तस्वीर में एक बिल्डिंग नजर आ रही है।

मुझे इस तस्वीर में खिड़की दिखाई दे रही है खिड़की--

दुकान के अंदर दो स्टूल भी दिख रहे हैं।